बड़ा सा पक्के का आँगना बना हुआ है जिसकी साइड में एक तीन तल्ला बिल्डिंग है जो व्हाइट कलर का है जिसमें बॉर्डर ग्रीन कलर कि है ऊपर आसमान लाल हैं।

एरिया दिख रहा है जिसमें बहोत सारे बालू ईंटा गुड़ी सब जमे हुए हैं।

एक बड़ा- सा दो तल्ला घर है जोकि पुरे अ हल्का रेड कलर का बना हुआ हैं।

दूर में एक दो तल्ला दुकान दिख रहा है जिस जिसकी ऊपर की शटल डाउन है नीचे का एक साइड बंद है दूसरा साइड खुला है जिसके ऊपर का बोर्ड ब्लू है उसके ऊपर व्हाइट बोर्ड है दुकान के अंदर अँधेरा --

ऊपर आसमान काला और बैगनी वाइट कलर का हैं सामने में दो पक्के के कूटि के जैसे खड़े हैं कुछ ग्रीन कलर की गछ हैं ऊँचे कुछ काला सा दिख--

ऐसा मैदान है जिसके नीचे का फर्श व्हाइट कलर का दिख रहा है साइड में पाज बने हुए है एक साइड में एक आदमी आ व्हाइट कलर का शार्ट पहन के बैठा है --